यह क्षेत्र एक बुक स्टोर है जिसका नाम श्री हिंगलाज बुक डिपो है।

बेड दिखाई दे रहा है और एक अलमीरा दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं।

यह क्षेत्र एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट है।

ये एक लखन बाबा आश्रम एवं विवाह भवन ठहरने के उत्तम व्यवस्था नाम का एक आश्रम भी है।